बहुत ही बड़ी अम अम बिल कॉलेज है यहा बिल्डिंग है यहा बहुत ही बड़ी है यहा क्रीम कलर हॉटेल कलर का कलर है पीछे ग्राउंड है। उसमे घुमटिया दुकाने --

यहा बहुत ही ग्राउन्ड है ग्राउन्ड मे बहुत सारी गाड़िया खड़ी हुई है।

बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है उसका कांच ही कांच लगा हुआ है कांच में पेड़ों की परछाइयां दिखाई दे रही है।

यहा बहुत ही बड़ा जंगल है बीच मे पुरानी इमारते चट्टान द्वारा बनी हुई है और पीछे बहुत ही बड़ा जंगल है जंगल दिखाई दे रहा है।

ओ रोड के बगल मे कार खड़ी हुई है ऑर व्हाइट कलर ऑर सिल्वर कलर खड़ी हुई है।

राईड साइड बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है यहा व्हाइट कलर का बना हुआ है और यहा बहुत सारे पेड़ है बहुत हरियाली दिख रही है।

यहा बहुत ही बड़ा कॉलेज है कॉलेज मे इन नीले कलर और व्हाइट कलर का है।

यहाँ एक वाइट कलर का घर बना हुआ है उसे हो विंडो के पास गुलाबी कलर है और यह एक झंडा भी लहरा रहा है साइड में बहुत बड़ा पेड़ है।

कुछ छोटे-छोटे पेड़ भी लगे हुए है आसमान पर्पल कलर में दिख रहा--

घर बना हुआ है व्हाइट सा बीच मे कुछ बना हुआ है पीछे बहुत सारे पेड़ है पेड़ दिखाई दे रहे है और बहोत सारे पेड़ दिख रहे है।

यह एक प्लॉट गया है प्लॉट के अगल-बगल छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है धुआ उग रही है।

यहाँ बहुत यहाँ बहुत ही बड़ा ग्राउंड है यहाँ ग्राउंड के अगल-बगल बहुत सारे पेड़ है बीच मे एक खंबा है।